यहाँ पर गाड़ी का डेट गला जा रहा है जो कि गाड़ी खराब हो रही थी। ये यहां पर ये गाड़ी सही कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है।

ये यहाँ पर सोफा भी पड़ा हुआ है ये मेज है बहोत ज्यादा अच्छी लग रही है | यहाँ पर दुल्हन सजती है आकर।